और यहां पर एक शख्स दिखाया जा रहा--

इसके सामने एक वृक्ष है।

इस एजेंसी का कलर व्हाइट कलर का है।

और इस माल में जाता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है।

ये हाथों में सामान लिये बैठे हैं यहां पे एक बूढ़ी औरत बैठे हैं यहां पर--

उन चेयरो का कलर कुछ व्हाइट है तथा कुछ ब्लैक है।

जिसमे खीरे रखे हुए है और भिंडी है।

यह एक स्थान है जहां पर पहाड़ है।

जिनको व्हाइट कपड़े से ढका हुआ है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिकल्स दुकान है।

यहां पर लिखा है हेल्थ कलफ फुगाना।

और इस मछुआरे ने लाइन में से लाइन वाला एक बनियान पहन रखा है।

और इसके पाछ एक तराजू रखी हुई है।

और कुछ गुड़ रखा हुआ है और इस चित्र में एक तौलिया है।

और तीन ड्रम रखे हुए हैं और एक छप्पर है।

वहां पर एक परे एक पशु खड़ी हुई है।

इनके बीच में एक टीचर दर्शाए जा रहे हैं।

इस बस पर एक तिरंगा झंडा उतरा हुआ है।

और इन्होंने इस इस नाव को चलाने के लिए हाथों में डम्बल लिए हुए हैं।

और कुछ विद्यार्थी खड़े हुए हैं।

यह सोफे बहुत सुंदर है इन भी है सोफे व्हाइट कलर के हैं।

और वाशिंग मशीन के पाइप भी हैं।

इस मंदिर के पीछे कुछ वृक्ष हैं और और एक कार खड़ी हुई है।

यह एक ऑफिस है।

और यह एक कमरा है जिस पर इंडिया लिखा हुआ है।